अच्छा है कुर्ता आर पिन्ह के आया देखने में बहुत अच्छा फोटो आर घिचा रहा है यहां पे नाशपाती के ब गमला के पास बहुत ही अच्छा लग रहा है।

हरे-हरे घास भी है देखने में बहोत ही अच्छा लग वहाँ पे आदमी जा रहा है देखने में बहोत अच्छा लग रहा है एक आदमी देखने में बहोत अच्छा लग रहा है।